और यहाँ पर इसके ग्राउंड में ए.टी.एम. वगेरा भी बना हुआ है जहां की कुछ यात्रीगण जिन्हें अम पैसे की जरूरत है वो वहाँ से निकाल सकते हैं।